और मैं पीछे की तरफ में देख पा रही हूं छोटी सी पोर्ट रखी गई है जहां पे एक छोटा सा पौधा है। मैं पीछे की तरफ में देख पा रही मेहरून और नीले रंग की दीवार मुझे नजर आ रही है।

इस पिक्चर में मैं देख पा रही हूँ छत की ये तस्वीर है जहां पर योगा करती हुई तीन महिलाएं मुझे नजर आ रही हैं । जिसके नीचे में मै योगा मेट भी देख पा रही हूँ ।

मैं देख पा रही हूँ सादी का मंडप मुझे नजर आ रहा है जिसके अगल-बगल में मैं देख पा रही हूं कि नीचे फर्श पे ऑरेंज कलर की मेट लगी हुई है और --